एक औरत का चेहरा ब्लर है।

दूसरे साइड में एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा तालाब है जिसमे बहोत सारी ग्रीन कलर की कुंभी जमी हुई है।

यहां पर सामने बहोत सारी जाली लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारी चारपहिया खड़ी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारे खंभे लगे हुए हैं जिसमें बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं।

दूसरे साइड में कूलर रखा हुआ है।

दूसरे साइड में एक कम्पुटर रखा है।

यहां पर एक बैकरी है इसमें बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं दूसरे साइड में।

यहां पर बहुत सारी प्लेटें और ग्लास रखे हुए है।

जो मेहरूम और ब्लू और येलो --

एक औरत बुर्खा पहने हुए है। दूसरी एक औरत बैठी हुई है।

यहां पर हुसैनगंज का बैनर लगा हुआ है।

ये एक बेडरूम है यहां पर सोफा पड़े हुए हैं जो ब्लैक कलर है।

जो मुर्गी और काफी चित्र बने हुए हैं।

दूसरे साइड में बहोत सारे काटे हुए--

दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है जिसमें दो बलफ लगे हुए हैं।

दृश्य में बहुत सारे व्हाइट कलर के गमले रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

दूसरे साइड में बहोत सारी चेयर पड़ी हुई है।

आइड में दू दूसरी दो गाड़ी खड़ी हुई हैं।

दूसरे साइड में एक छोटा सा सोफा पड़ा हुआ है।

खिड़कियों में बहोत सारी सामान रखी हुई है।

छोटी छोटी ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।